इसको स्काई ब्लू कलर से पेंट किया गया है अंदर ग्रिल लगा हुआ है शटर --

अ यहाँ पर लिखा भी है महाविद्यालय --